और नीचे टाइल्स लगा हुआ है।

और दुकान भी चकाचक भरा हुआ है।

कैमरा पकड़ा हुआ है और हाथ में फोन भी है।

कई सारे बाईके भी बाहर खड़ी है।

और पहार में शटर भी लगा हुआ है।

पेट्रोल पंप में काफी चहल पहल है।

शादी में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और यहां काफी व्यक्ति मार्केट में घुमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

के पास एक सारी काचे लगी हुई है।

पार्क में बहुत ही खूबसूरत नजारा है यहा काफी चहल पहल भी है।

इसमें एक मंदिर का दिखाई पड़ रहा है मंदिर के पास में एक अमेरिकन स्कूल भी है।

बसंत विहार गार्डन का माहौल है।

और इसमें काफी सारे डस्टबीन भी लगे हुए है।

पर यहां कांच की बिल्डिंग बनी हुई है।

एक दरवाजे के अंदर का रूम काफी अंधकार है।

और आसपास काफी सुंदर माहौल है।

और अंदर में बार्बी के निशान लिखा हुआ है।

पोल्ट्री शॉप भी है जहां पे पोल्ट्री की समान मिलती है।

और इसमें चार डेस्क दिखाई पड़ते हैं।

में कंप्यूटर भी लगे हुए हैं।

सड़कों में काफी कीड़े भी दौड़ रहे हैं ऊपर एक बरांदा भी है।

और दो कारें भी है और रेलिंग्स भी लगी हुई है।

चार बिल्डिंगे है काफी कांचे है एक दीवारें है काफी पेड़ है सुखा आसमान है।

और ऊपर लाइटें भी जली है।

डेंटल क्लीनिक के बाहर एक पोस्टर लगी है।